यहां एक रोड के सामने बहुत बड़ा सा घर दिख रहा है।

इस काउंटर का कलर पीला और वाइट है।

इनके साड़ी का कलर गोल्डन और पीला है।

इन तीनों लोग के ड्रेस का कलर सफेद है और इस रूम का कलर पीला है।

इस टेबल का कलर कत्था है इसमें लकड़ी के सामान रखे हुए सब कत्था कलर के हैं।

यहां एक पहाड़ पर से बहोत सारा पानी नीचे आ रहा है जोकि झरने जैसा दिख रहा है।

सेकंड फ्लोर पे दो दरवाजे भी दिख रहे हैं।

यहां एक ग्राउंड में कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं।

यहां एक रास्ते के सामने एक बड़ा सा घर दिख रहा है।

साइड में बहुत सारे जिम के सामान रखे हुए हैं इस रूम के फर्श का कलर ब्लू और रेड है।

इस पार्क के सामने बहोत बड़ी बड़ी घर दिख रही है।

इस पार्क के साइड में तार का जाली का बाउंड्री किया हुआ है और इस पार्क में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यहां एक पार्क जैसा दिख रहा है इस पार्क में बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है।

ऊपर एक इंश्योरेंस दुकान दिख रहा है।

दुकान के सामने फूल लगाए गए हैं और फूलों का कलर पीला है और इस दुकान का कलर पीला है।

यहां एक पलंग और सोफे की दुकान है दुकान के सामने एक दीवान लगाया हुआ है।

कान के काउंटर पर एक ब्लू और वाइट कलर का नल रखा हुआ है।

दुकान के रैक में बहोत सारे सामान भरे हुए हैं।

दुकान में एक गद्दा वाला कुर्सी भी दिख रहा है जिसका कलर कत्था है।

अ एक बड़े से पेड़ और बांस में एक बैनर को लटकाया गया है और इसके नीचे ब्लू कलर का बाउंड्री किया हुआ है।

दुकान की दीवार का कलर पीला है और दुकान के पोस्टर में एल_आई_सी प्रीमियम प्वाइंट लिखा हुआ है।

स्कूल के सामने एक झंडा फहराने की जगह बनाई गई है।